खिड़कियां शीशो से बनाई गयी है। इस बिल्डिंग में गेट भी है।

और यहाँ की फ्लावरिंग --

प्लस का साईंन ए ।

यहाँ पे बहोत सारे टीचर भी हैं। यहाँ पे बहुत --

और यहाँ पे बिजली के खम्भे भी है। इनमें बिजली पास भी हुई है। इधर एक --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

उम्म कोई चीज़ का बीज मिल रही है और कुछ अ सभी प्रकार का यहां पे सामान उपलब्ध है।